ये पीछे बैकग्राउंड बहोत अच्छा चल रही है।

टेबल दिख रहा है बार दिख रहा है यहां पे लाइट जल रही है।

ये तो रोड पे की दुकान दिख रही है इस पे गन्ने का ज्यूस मिलेगा।